इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक जिम की दुकान है और जिम की दुकान भी काफी बड़ी दिख रही है।